में बहुत सारे महिलाएं और पुरुष दिख रहे हैं।

पीछे लाइटें भी लगी हुई है।

जिसमे कुर्सी मेजे पड़ी हुई हैं।

और एक व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ है।

माइक लगा हुआ है पंखे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टो कि है।

पीछे एक दीवाल है जिस पे फ्रेम लगे हुए हैं।

कुछ बच्चों के स्टैचू भी लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की है।

तस्वीर में पीछे एक झांकी सा बना हुआ है।

यह तस्वीर एक मॉल की है।

एक व्यक्ति दरवाजे के सांचे को बांध रहा है।

और कुछ दूसरा सामान भी पड़ा हुआ है।

आकी के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह तस्वीर सड़क की है जिसके ऊपर एक ब्रीज बना हुआ है।

और नीचे एक पार्क भी बना हुआ है।

चार्ट से तो कुछ कॉपी के पेज से भी बनाए गए हैं।

एक महिला है जिसने हरे रंग की पन्नी में कुछ पकड़ रखा है।

और एक बिजली का खम्भा भी है जिसमें तार लगे हुए हैं।

तथा पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टो की है।

सफेद और नीले कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं। टेबल हैं। टेबल पे टिशू पेपर रखा हुआ है और कुछ पानी की बोटलें भी रखी हुई हैं।

झूमर लगा हुआ है पंखा लगा हुआ है और बहुत सारे गुब्बारों से सजावट की गई है।

और एक आग बुझाने वाला यंत्र भी रखा हुआ है।

एक महिला है जिसने हरे रंग का पर्स डाल रखा है एक व्यक्ति सर पे हाथ रखे है।

यह तस्वीर अमूल डेरी की है।

पोस्टर के नीचे बहुत सारे गमले में पौधे लगे हुए हैं।

जिसके बाहर एक फूल का पेड़ लगा हुआ है।

इसमें एक फहुहारा लगा हुआ है।

दरवाजे के बाहर एक मैट भी पड़ा हुआ है।

तथा बिछे कुछ व्यक्ति भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं।